यहां पर सामने एक बिल्डिंग बनी हुई है जिसक नीचे बैंक बनी हुई और उसी सामने गाड़ी खड़ी हुई है सफेद कलर की--

जोकी जिस-जिसके के कपड़ो में कपड़ो का कलर नीला है या जेकेट पहन के खड़ा है।

और लाइटिंग की गई है पिले कलर की और बॉल रखी है नीले कलर की।

यहां पे एक स-संगीत कार्यक्रम हो रहा है जिसमे-ए एक आदमी गाना गा रहा है दूसरा बैठा हुआ है।

सीढ़ियों के ऊपर लोहा लगा हुआ है ये कलर काला है और टंकी का कलर पीला है।

यहां पे एक घर संगीत है जिसमे बहुत सारे लोग गाना गा रहे हैं।

एक स्कूल बना हुआ है जिसका चैनल नीले रंग का है या ऊपर वाला लगा हुआ है वह जिसका रंग काला है।